उसके आस-पास बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं। खुला आसमान नज़र आ रहा है। आसमान में रामधनु नज़र आ रही --

शॉप के सामने चार पांच लोग खड़े नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रिक के कुछ तार नज़र आ रहे हैं।